पोस्टर में एक आदमी सोया हुआ है |

छाता बड़ा सा दूकानदार लगया हुआ है वहां पेड़ बड़ा भीरी है और बड़ा-बड़ा मकान है आसमान में --

आसमान बहुत सुन्दर दिख रहा के तारे हैं |

शीशा आगे से पूरा लगा हुआ है | नीचे आदमी खड़ा है | खिड़िकीआ खुला हुआ है खिड़कीआ में ग्रिल लगा हुआ है | बाइक पे बच्चा बैठा हुआ है --

है छोटा दिख रहा है वाइट कलर से पेंट किया हुआ है हैं |

अंदर से चित्र बनाया --

एक बहुत बड़ा मछली का दुकान है वहाँ पे --

पे रखा हुआ बहुत सारा सामन |

टिकली लगा हुआ डाइवर --

बहुत सरे बच्चे है चारो तरफ है पोस्टर लगा हुआ है वह पे फूल है बड़ा-बड़ा पेड़े हैं।

वाइट कलर का पेंटिंग किया हुआ है | में सुन्दर देखने में लग रहा है --